यहां पर काफी हरियाली है यह सड़क के किनारे बना हुआ है यहां पर गांव के लोग काफी खेलते हुए नजर आ रहे हैं।

दुकान काफी लंबी चौड़ी है ये आगे से बंद आ रही है आगे से इसमें ग्रील लगे हुए नजर आ रहे जो काफी सुंदर लग रहे हैं।